जो ऊपर की ओर कुछ सुधार रहे हैं। सामने की और कार भी दिखाई दे रही है।

यहाँ सामने एक की और एक बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है जहां --

यहाॅं सामने की ओर एक बड़ी सी बस दिखाई दे रही है। जहाॅं बस में बाहर की ओर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है सामने की ओर रोड दिखाई दे रहा है।

यहां सामने की और बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है जहां पहाड़ के पास मे एक बड़ी सी नदी भी दिखाई दे रही है।

यहाॅं अंदर की ओर एक बड़ी सी नाव भी रखी हुई है जिस पर व्यक्ति खड़े हुये हैं।

यहाँ सामने की ओर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो टाई --

की हेयर स्टाइल वो दिखा रहा है। सामने की ओर दीवार दिख रही है।

एक बड़ी सी टोकरी लिए हुए हैं। टेकरी के ऊपर गेंहू की बाले रखी हुई हैं।

यहां सामने की ओर एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दे रहा है जिस --